ये टेबल है लोग जो है ये संध्या के वक्त मे ये चेयर लगा करके लोग खास करके अपने पिकनिक मनाने के लिए बैठते है और संध्या का समय गुजार लेते हैं।

ये विद्यालय है। विद्यालय का लगता है कि ये है।